बिल्डिंग के सामने से एक रास्ता गुजर रही है।

सामने की तरफ रास्ता दिख रहा है।

इस चित्र में एक बरामदा दिखाया गया है।

इस चित्र में किसी पार्क का नजारा दिखाया गया है।

बाहर की तरफ एक बोर्ड लगा हुआ है।

इमारत के सामने एक कैंडल स्टैंड भी है।

रेस्टोरेंट पर बहुत सारी झालरें व लाइटें लगी हुई हैं।